इसलिए बना हुआ है जो कि टाइगर है लिखा हुआ है और इस बॉउंड्री भी बनी हुई है।

तस्वीर में सामने की ओर तीन वर्कर लिए है जो की गले पकड़े हुए हैं और नीचे की ओर --

और इस तस्वीर में सस फूल रखे हुए हैं और ऊपर की ओर लकड़ी से मालाय टांगी हुई हैं।

तस्वीर में सामने की ओर एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है जिसमे खिड़किया भी बनी हुए है और गेट भी बने हुए है।